खिड़कियों के डिजाइन वाइट दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें दिख रही है कुछ स्कूटीज है।

और पीछे एक टेंपो को दिख रहा है व्हाइट कलर --

सामने गेट दिखाई दे रहा है।

और पीछे की ओर ब्लैक कलर दिख रहा है।

यहां दिख रही है एक कार। --

रेड कलर की कुछ लकड़िया दिखाई दे रही है।

यहां पर ब्लैक कलर की एक कार --

ब्लैक और व्हाइट कलर की चेयर दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर हमें दिख रही है सामने की ओर--

यहां पर हमें एक दुकान दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर हमें आसमान ब्लू कलर का दिख रहा है।

सामने ही गेट लगा हुआ है।

बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा समान रखा गया हैं बॉक्सेस के अंदर।

जो की गमलों में लगाए गए है।

यहां पर हमें दिख रहे हैं कुछ बच्चे--

जिसपे की कंबल दिख रहा है व्हाइट कलर --